यहां पे एक बाउंड्री भी दि लगी हुई है सामने एक आंगन है।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

यहां पे पांच दरवाजे हैं जो खुले हैं।

यहाँ पर दो आदमी खड़े दिख रहे हैं एक आदमी अंदर बैठा हुआ है।

यहां पे एक शीशे का कबर्ड बनाया हुआ है जिस पे खिलौने रखे हुए हैं जो ग्रीन कलर और रेड कलर के डब्बे हैं।

यहां पे व्हाइट कलर के कपड़े भी लगाए हुए हैं यहां नीचे बल्ब जल रहे हैं।

यहां पे एक बैठने के लिए भी जगह बनाया हुआ है जीसपे एक बाल्टी रखी हुई है।

यह एक एल्वेस्टर भी सामने से लगाए हुआ है।

पीछे मोबाइल की फ्लैश दिख रही है।

यहां पांच लोग कहीं जा रहे हैं दो आसमानी कलर का टीशर्ट पहने हुए हैं एक ऑरेंज कलर कि टीशर्ट और ब्लू कलर कि जींस पहने हुए हैं।

लंबी लंबी टहनियां भी दिख रही है।

यहां बहुत सारे रंग बिरंगे फूल से सजाया हुआ है।

यहाँ पे एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ है।

ये एक दुकान का दृश्य है यहां पे बहुत सारे सामान रखें हुए हैं एक आदमी काले कलर के कपड़े पेहने हुए खड़ा है।

एक आदमी यहां पे बैठा हुआ है यहां पे एक स्टीकर लगा हुआ है जिसमें सेकंड होम लिखा हुआ है।

यहां एक बीच में रास्ता दिख रहा है और एक काले कलर की गेट भी लगी है।

ये एक मिठाई दुकान का दृश्य है यहां पे मिट्ठी स्वीट्स भी का बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सारी महिलाएं और बच्चियों भी है।

यहां पे एक गेट भी है गेट के पास एक जार भी रखा हुआ है।

यहां पे बिल्डिंग भी बनाई हुई है।

बीच में यहां एक बहुत बड़ा तालाब है तालाब के बीच में घास भी है।

यहां नया घर बन रहा है जिसमे बास भी लगे हुए है।

यहां पे एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा है।

यह एक घर का दृश्य है जो वाइट और मैरून कलर की पेंट से पेंट किया हुआ है।

दीवाल पर हैप्पी बर्थडे का स्टीकर लगाया हुआ है।

यहां दो तीन पिलर हुई लाइन से लगे हुए हैं ऊपर अल्बेस्टर बना हुआ है ।

ये ब्लू कलर और वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें सामने शीशे लगे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग है जो दो फ्लोर की हैं और पीले कलर की रंग की हुई हैं और लाल कलर की बॉडर भी हैं।

यहां पे लोहे के सीढ़ियां बनी हुई है।